कई सारे आइटम पूल बाल भी पूल लिखा हुआ है।

लाइटिंग लगा हुआ है बहुत अच्छे सुसज्जित व्यवस्थाएं हैं चेयर्स पड़ी हुई हैं पेपर न्यूज़पेपर रखा हुआ है।

इसमें धान लगा हुआ धानों में पानी भरा गया है पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जो कि धूल के रख डाले गए हैं।

स्टोन लगे हुए हैं हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं।

जो कि हम लोगों का एक व्यवसाय बन गया है।

अपना पेट्रोल डलवाते हैं और अपना आगे बढ़ाते--

यह एक पार्क का दृश्य दिखाया गया है।